फ्रेंड के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं।

बाकि जो कि यहाँ पर कपरा हो गया।

गोलंबर है जो कि बीच में कुछ --

कॉफ़ी हो गया या चाय या जो भी स्नैक्स हो या।